यहा हमें बहुत बड़ा जो है तालाब या समुद्र दिखाई दे रहा है| समुद्र के आस पास बहुत सारे हरे भरे पेड़ पोधे भी दिखे रहे है।

जस्ट सामने हमें समंदर के अंदर कुछ हरे-भरे जो पोधें है वो दिखाई दे रहे हैं देखने से ये पूरा व्यू हमें कमल के फूलो का लग रहा है।

यहाँ हमें बहुत ही बड़े-बड़े जो है आलू दिखाई दे रहे हैं। यह आलू एक कैरेट में रखे हुए हैं।

यहाँ पर हमें एक बॉय दिखाई दे रहे है ओकि मल्टी कलर की टी-शर्ट पहने है ब्लैक कलर का पेंट पहने है और एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे यह हमें खड़े दिखाई दे रहे है।

और एक का कम्प्यूटर के सामने एक पर्सन बैठे हुए हैं और दो पर्सन जस्ट उनके सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहुत बड़ा सा जो है हारा भरा मैदान दिखाई दे रहा हैं मैदान को पूरा जो है जाली से कवर किया गया है वाएट कलर की जाली है।

यहाँं सामने हमें एक बॉय दिखाई दे रहे हैं। जिसने हेयर कट करवाया हुआ है ऊपर से बाल बड़े हैं बाजु में बाल छोटे हैं।

इनके सामने कुछ बर्तन रखे हुए है जिसमे वो फिश को फिनिशिंग से कट करके रख रहे हैं ।

यहा पर हमें एक बड़ा सा रूम दिखायी दे रहा है रूम की ऊपर दीवाल पर वाइट कलर पेंट है कुछ लाइट्स लगी हुई है और सामने हमें बहुत ही प्यारा जो है सा डेकोरेशन की गई वाल है।

यहाँ हमें एक साइड दिखाई दे रही है। जिस पे कुछ मजदूर है जो रेत गिट्टी सीमेन्ट का मलमा बनाते हुए हमें दिखाई दे रहे है।